जैसा कि मैं देख प रही हूँ मुझे यहाँ पे एक दूल्हा दिखाई दे रहा है जिसने गोल्डन कलर की शेरवानी तथा महरूँ कलर का पाजामा पहना हुआ है। इसकी जमीन --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मुझे यहां पर एक दुकान दिखाई पड़ रही है जिसमें बहोत सारा सामान --

दूर-दूर तक इमारतें भी दिखाई पड़ रहीं हैं जोकि सुंदर लग रहीं हैं। यहाँ पे हरी-हरी घास दिखाई दे रही हैं।

एक वहां खड़ा हुआ दिखाई देता है। दूर-दूर तक पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर बोहोत सारी चीजे है। यहां की दीवार सफेद है। यहां पर एक श्री राम जी की दीवार पर फोटो भी चिपकी हुई है।

दिखाई पड़ रहा है। यह मैदानी इलाका दिखाई देता है।

यहां पर यह एक सूटकेस की दुकान मालूम पड़ती है। यहां पर --

सेवेंटी परसेंट ऑफ भी लगा हुआ है। यहां पर बहोत सारी लाइट्स हैं।

कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर हरी-हरी घासे उगी हुई हैं।

इसने सफेद रंग की शर्ट तथा नीले रंग की पेंट पहनी हुई है। ये एक पार्क है।

यहाँ पर मुझे बड़ा सा एक झूला भी दिखाई पड़ता है इसके आस-पास हरे-हरे पेड़ लगे हुए है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक लाइब्रेरी है।

मुँह पर हाथ रखे हुए तथा दवाइयाँ दे रहा है।